यह चित्र एक कार्यालय की है और खुली जमीन नज़र आ रही है कार्यालय के दिवारो पर जाली लगी हुई है और बड़े पेड़ लगे हुए है।

मकान पर्दे से ढका हुआ है और सामने एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है।

चित्र एक कार्यालय की है और इसके सामने कुछ गाड़िया ठेहरी हुई है इस सामने कुछ पौधे लगे हुए है और दूर एक मूर्ति ठेहरी हुई है।

इस चित्र मे एक दुकान नज़र आ रही है।

ये अस्पताल का नाम शिवम हॉस्पिटल है और इसमे अ बहोत से खिड्किया है और शिशे की बनी हुई--

हे चित्र एक जिम की है और उपर की और बहोत सी तस्वीरे लगी हुई है।

और नीचे बहुत सी मशिने रखी हुई है। जिम की दीवार सफ़ेद रंग की है और उसके उपर एक घड़ी लगी हुई है।

ये चित्र एक जिम की है और जिम की लाईट्स उपर लगी हुई है।

जिम की दिवारे पीले रंग की है और काले रंग की है और बहुत सी मसीने रखी हुई है।

एक अस्पताल की है और अस्पताल के बाहर एक एम्ब्युलेन्स ठहरी हुई है।

चित्र एक पुराने किले की नज़र आ रही है और इसमे कही सारी सिडिया लगी हुई--

सामने की और एक सड़क दिख रही है और सड़क साफ नज़र आ रही--

एक जंगल की है और उपर पत्थर है पत्थर के उपर घास लगी हुई है और बादल बहुत घने दिख रहे है इसलिए धुंधला नज़र आ रहा है।

दीवा दिवारे बहुत बड़ी है। और नीचे से एक आदमी गुजर रहा है।